और पीछे कुछ किसी चीज का ऑफिस है।

सामने दो पोस्टर लिखे हुए है वेलकम टू लाइट हाउस अकैडेमी --

सामने जामा मस्जिद है। और यहाँ पे तार दिख रहे है मुझे बिजली की बहोत सारे--

साइड में कप रखी हुए हैं जो वाइट कलर के है बेक पीस आइटम रखा हुआ है कुछ उस साइड भी--